यहां पर मुझे बहुत सारे कुरकुरे और चिप्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बहोत सारे टायर दिखाई दे रहे हैं।

पाइप दिखाई दे रहीं हैं यहाँ पर मुझे बहोत सारी साइकल दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर मुझे साइकिल के कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है।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

मुझे यहां पर कार की सफाई होते हुए दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक बाल्टी दिखाई दे रही है कार का गेट खुला हुआ है।

मुझे यहां पर फूलो से सजा हुआ एंट्रेंस दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर पानी की टंकी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर फूलों की सजावट दिखाई दे रही है।

मुझे यहां सफेद और गुलाबी रंग के पर्दे दिखाई दे रहें हैं।

मुझे यहां पर बहोत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।